और सामने देखिए बिजली के खंबे से बिजली की तारें गई हैं और आसमान का रंग सफेद और हल्का काला है और अगल बगल देखिए दुकान --

अगल बगल देखिए बहुत सारे घने जंगल जैसे पेड़ हैं और देखिए नीचे भी कुछ छोटे-छोटे पौधे और घांस उगे हुए हैं।

सामने ने आप देख रहे हैं सिलमिट का रास्ता बनाया गया है और उसके अगल बगल देखिए सफेद रंग की पट्टी बनाई गई है और यहां पर देखिए दो स्कूटी से सवार अ इधर आ रही हैं।

और बगल में देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी है और पैंट पहना हुआ है और अगल बगल देखिए बहुत सारे घने पेड़ हैं।

सामने देखिए एक रूम है और यहां पर देखिए एक आदमी है लेटा हुआ है जिसने मेरून रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

जिसमें कि एक काले रंग की तार लगी हुई है और यहां पे देखिए बगल में एक पर्दा लगा हुआ है जो कि पीले रंग का है।

और वहां पर देखिए सामने एक बहुत बड़ा सा नाव है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है और आसमान का रंग देखिए आसमानी है और देखिए अगल बगल बहुत सारे घने पेड़ हैं।

सामने देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कब ए_टीए_म और यहां पर देखिए दो आदमी खड़े हुए हैं जिसमें कि एक ने सफेद रंग के शर्ट पहने और काले रंग का पेंट पहना हुआ है और एक ने सफेद रंग के शर्ट और पैंट पहने हुए हैं और --

जो कि अ नीले रंग का है और सामने इस पर शीशा लगा हुआ है और बगल में देखिए स्टील की रेलिंग गई हुई है और इधर भी देखिए एक आदमी बैठा हुआ है इसने टी-शर्ट पहनी हुई है।

है और यहां पर देखिए इसमें जो ईटे का से बनाया गया है और यहां पे देखिए बगल में जो छोटी सी दीवार खड़ी की गई है वो वो काले और पीले रंग में है।

और सामने देखिए बहुत बड़ा सा पहाड़ है और इधर जो दीवार का रंग है वो सफेद रंग से किया गया है और --

बीच में देखिए पेड़ के अगल-बगल भी दीवार बनाई गई है सफेद रंग के और यहां पे देखिए बैठने के लिए भी सफेद रंग का बनाया गया है और --

और अगल-बगल देखिए बहुत सारे घने पेड़ हैं और सामने देखिए दरवाजा लोहे का है जो कि काले रंग से किया गया है और यहां पर देखिए जो खंबे हैं वो नारंगी रंग से किए गए हैं और --

और यहां पर देखिए नीचे पानी का जो रंग है वो पूरा एकदम दूध की तरह सफेद है।

और नीचे देखिए मेज बहुत बड़ी सी बनाई गई है जो कि काले रंग की है।

ने आप देख रहे हैं बहुत सारी रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है और यहां पर देखिए अगल बगल जो दीवार है वो सफेद रंग की दीवार है।

और यहां पर देखिए अगल बगल पेड़ों की पुलवारी बनाई गई है और यहां पे देखिए बीच में कुछ डिजाइन बनाया गया है और उसके नीचे देखिए हरे घास उगे हुए हैं।

सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा घर है जिसे दीवार का रंग हरे रंग से किया गया है और बीच में देखिए द्वार बनाया गया है दरवाजा रंग से किया गया नाप --

छोटी-छोटी खिड़कियां भी बनाई गई है और बीच में देखिए सफेद रंग की पट्टी की गई है।

सामने आप देख रहे हैं रेल्वे की पटरी बनाई गई है जिसमें कि अगल बगल देखिए इधर --

कुछ लोहे से ओए पत्थर को बांधा गया और इधर देखिए जो द्र जमीन है वो --

और इधर देखे कुछ झाड़ी जैसे दिख रही है कुछ सूखे पेड़ भी दिख रहे है।

सामने आप देख रहे है समंदर है और यहा पर दिखाई बगल में बहुत बड़ा सा पहाड़ है उसमे देखे छोटे छोटे और घने --

सामने देखिए यहां पर बहुत सारे औरत और आदमी हैं जिसमें कि कुछ खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं और यहां पे जो दीवार का रंग है गुलाबी रंग से किया गया है औरो --

हमने देखिए यहां पर लोहे की सीढ़ी बनाई गई है और अगल बगल देखिए बहत सारी बड़ी-बड़ी मशीन ए हैं और टैंकर रखे गए हैं।

और यहां पर देखिए नीचे जो है सिरमिक जैसा बनाया गया है इसमें लोहे का और यहां पर देखिए उसी पे रखा गया है और दीवारों का रंग देखिए पीले रंग का है और देखिए कुछ-कुछ दीवाल यहां पे काई अ भी इस पे लगी हुई है और --